यहां एक आदमी फोटो खींच रहा है।

ये चित्र एक मॉल का है।

यहां शोपीस की भी बहुत सारी चीजे हैं।

यहां पर एक वृद्ध टीचर भी--

ये तस्वीर एक दुकान की है।

यहां बहोत सारी रंग बिरंगी फूलों की मालाएं --

ये सिलेंडर लाल रंग के--

और बहोत मोटा कला पाइप इसमें अटैच हो रखा है।

यहां पंखे भी दिख रहे हैं।

यहां पर बहोत बड़ी कच्ची सड़क है।

यहां पर एक झरना भी दिख रहा है।

इसमें बहोत सारी लकड़ियां फैली हुई हैं।

यहां पर पंखे भी दिख रहे हैं।

एक लड़का लेटा हुआ है और दूसरा उसका इलाज--

और गले मे पीला दुपट्टा पहना है।

ये तस्वीर जिम की है। जहां पर एक आदमी जिम कर रहा है।

यहां पर एक दुकान में ये सफेद रंग की शीटे --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

बहोत सारे पेड़ और झाड़ियां भी यहां हैं।

कुत्ते बिल्लियां और गाय मोर--